यहाँ एक छत का वर्क चल रहा है जहाँ बहोत सारे तार बिछाए गए हैं तथा चादर बिछाई जा रही कुछ लाइट फिटिंग की नलिया बिछी हुई है।

तथा एक फव्वारे लगे हुए हैं जहाँ आसपास बहुत सारी औरतें और व्यक्ति खड़े हैं बिल्डिंगों पर लाइट लगी हुई है।